अनुविभागीय ऑफिस हैँ ये यहाँ पर अधारी अधिकारी लोग आते हैँ अपना अपना काम करते हैं।

ये फल दुकान भी बहुत ही अच्छे है देखिए केले कितने ताजे ताजे लटक रहे है अंगूर है पपीता है यहाँ जूस भी निकाल दिया जाता है जूस पिये --

ये डिमरा अस्पताल का लिफ्ट डॉक्टरों के लिए अलग से बनाई गई है नर्सों के लिए और पेशेंट के लिए अलग से बनाया गया है।